इसके अंदर हरे घास नजर आ रहें हैं।

और नीचे सफेद रंग के चार टेबल लंबे-लंबे लगे हुए हैं।

और बाहर एक सीढ़ी दिख रही है।

और बहार तो टूल्स रखे हुए --

और एक बोर्ड भी है जिसपे भारतीय स्टेट बैंक लिखा हुआ है।

लॉबी में बड़ी-बड़ी खिड़कियां है जिसमें ग्रिल लगे हुए।

और एक लेडी डॉक्टर है जो एक रजिस्टर में कुछ लिख रही हैं।

और एक बाउंड्री वॉल है जिसका कलर येलो है।

बस के बाहर कुछ खाली जगह है जहाँ कुछ प्लास्टिक गिरे हुए है।

और सामने में एक शीशा लगा हुआ है।

इसके ऊपर दो लोग खड़े हैं।

जिनपे हरे रंग से कुछ डिज़ाइन्स बने हुए हैं।

एक आदमी ने सफेद रंग का ड्रेस पहना है।

और यहाँ पे बहुत सारे हरे झंडे लगे हुए है।

और एक ऑटो नजर आ रहा है।

और सफेद माला के पीछे कुछ फूल रखे हुए हैं टोकरी में जो पीले रंग के हैं।

नीचे फर्श पे टाइल्स लगे है जो सफेद रंग के है।

इसके वाॅल का कलर सफेद है।

यहाँ पे बहुत सारे ए.सी. नजर आ रहें हैं।